यह एक जिम का फोटो दिखाया गया है और इस जिम में बहुत सारे लोग जिम करने के लिए जाते है जिम करने से हमारा सरीर मे बॉडी बनता है ।

मुसेलगंज जहानाबाद में है यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए।

इसका पेड़ बहुत ही बड़ा-बड़ा होता है बहुत ज्यादा मीठा भी लगता है खाने में।

यह एक जिम का फ़ोटो दिखाया गया है यहां पे बहुत सारे लोग जिम करने के लिए जाते हैं।